पेड़ पौधे भी गमले में रखे हुए हैं।

यह एक फंक्शन रूम दिख रहा है जहां पास फेयरवेल पार्टी --

लगे हुए हैं और लाइट भी लगी हुई है और फैन भी लगा हुआ है जो बहोत ही अच्छा दिख रहा है।

तीन फैन लगे हुए हैं और दो लाइट भी लगी हुई है।

दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और एक गुम्मावीर--

गुलदस्ता से सजा हुआ है और बहोत ही अच्छा लग रहा है। लाइट ब्लू कलर की लगी हुई है।

में बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है और मन्दिर की गुम्मत के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है।

और द्वार के पीछे एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और कुछ अन्य पेड़ भी दिख रहे हैं।

धूप ना लगी इसलिए उनके लिए टीन की छांव भी बनी हुईं हैं।

और कुछ लकड़ियां भी रखी हुई हैं और--

और एक बाइक का पोस्टर लगा हुआ है यहां पास कुछ--

यह एक क्लास रूम है यहां बच्चे पढ़ाई कर रहे है।

दरवाजा लगा हुआ है और यहां--

जूतियां रखें और टंगी हुई है यहां पास कुछ बॉक्स में न्यू जूता भी रखा हुआ है और एक बल्ब भी लगा हुआ --

यह एक पार्किंग जो बहोत ही प्यारा लग रहा है बीच में--

यह एक कपड़े की शॉप है जो बहोत ही अच्छे लग रही है यहां पास बॉयस के कपड़े--

और मंदिर के बहोत सारे गुंबद भी बने हुए हैं दो व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं।

और मंदिर के आजू बाजू पेड़ पौधे लगे हुएं हैं।

है छोटा सा कुछ पत्थर भी डाला हुआ है।

कुछ कपड़े भी रखे हुए है अलमारी के ऊपर कुछ बॉक्स भी रखे हुए है।

यहां पास एक व्यक्ति गेट के बाहर खड़ा है और दो व्यक्ति कार के बाजू में खड़े हुए हैं।